ये ज़ू है यहाँ हरा-हरा पानी है हरी-हरी घास है और दो मगरमच्छ भी बैठे है और दूर दो दूसरे भी मगरमच्छ बैठे हुए हैं वहाँ पर।

ये बहोत बड़ी मंदिरों की जगह है यहाँ पर अलग-अलग तरीके की मंदिरों की माताएँ है बनी हुई है यहाँ पे।